मुझे एक खेत नज़र आ रहा है खेत पूरा हरा भरा सा दिखाई दे रहा है और खेत के बाजू में कुछ पेड़ नजर है और कुछ पंछियां आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे है।

खेत के पास एक घर बना हुआ है जहां पर कुछ लोग दिखाई दे रहै हैं और मुझे कुछ लोग--

जो उसे स्टेच्यू बना के रखा गया है और वहां पर रेड एंड रेड कलर की सीढ़ियां नजर आ रहीं है।

और स्कूल मे छत और दो छतरी नज़र आ रही है और यहाँ पर तिरंगे झण्डे का पूरा गोल स्टेज बना हुआ है।

इस क्लासरूम मे मुझे अंदर कुछ हल्का सा नजर आ रहा है और ये बिल्डिंग पिंक कलर की दिखाई दे रही है।

और यहां पर सुरुचि सू रु ची का एक पैम्फलेट छपा हुआ है एंड यहां पर बहुत सारी वैराइटी रखी गयी है।

एक ग्राउंड है ये एक फुटबॉल ग्रांउड है और यहां पर एक फुटबॉल के लिए--

जिसमें बच्चा सीढ़ियों से चढ़ के जा रहा है वहां भी चार आदमी खड़े हुए है जो एक दूसरे से बाते कर रहे--